यहाँ पर पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है तालाब में बहुत सारा पानी भरा हुआ हैयहाँ पर एक बड़ा पेड़ भी लगा हुआ हैं।

यह एक चाइल्ड पार्क की फोटो है ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर दो झूले लगे हुए हैं तीन झूले लगे--